यह मछलीयोकी शॉप है जहा पे बड़े-बड़े छोटे-छोटे मच्छली यो जो है रखी गई है।

और एक लड़का जो है जिम कर रहा है अजू-बाजुमे जो है पूरी जिमस की मशिने रखी हुई है क्यूकी ये एक जिम है।

बहुत सारे मछलिया रखी गई हैं। और कुछ बड़े साईज की और कुछ छोटे साइज के है। आजू-बाजु में जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं।

उसके इस साइड मे जो है एक ग्रिल जैसी है और वहा पे दो आदमी खडे है और उस मैदान की हुए बच्चे की और देख रहे है।

तीन आदमी खड़े है जो कि एक दूसरे से हाथ मिला रहे है कोई आगे की और देख रहा है और एक दूसरे की तरफ देख रहा है।

बैंक है जहा पे इस बैंक के दीवार पर बहोत सारी पोस्टर्स लगाए गए है और उसके साइड मे एक महिला और एक पुरुष जो है बैठे हुए है।

और उस शॉप के पीछे जो है बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है और कुछ सामान जो है इधर उधर रखा --

जो एक बड़ा सा समुंदर है जिसके किनारे एक नाव खड़ी है और उसके उपर जो है--

कुछ सामान रखा हुआ है किनारो पे जो है दो लड़की और एक महिला खड़ी हुई है।